यख मा जी मैदाना सामने मा जी एक सफ़ेद रंग की बड़ी बारिकी इमारता ईं पर कई सारी खिड़की छन।

यख मा जी रेलिंग छन दिखेण लगीं यख मा जी टीन कु छप्पर छा दिखेण लग्युं यख मा जी सीढ़ी छन भिड़ी छन कुछ लोग भी छन यख मा जी खड़ा होयां यखम केला का पत्ता छन यख मा जी हरयां भरयां डालान पिछाड़ी मा जी हरयूं भरयूं ढालदु बिजली का तारन यख फणा।

जी एक बड़ी बारीकी पिला रंग की ईमारत चा यखमा जी नीला रंग का बोर्ड करा लाग्यां यख दिवाल मजी एक झंडा च बाणियूं यखमा जी कुछ बोर्ल्ड नीला रंग कु लग्युं।

जी एक बड़ु बारिकु कमरा करा यख मा जी कई सारा फटेला रख्यां यख मा जी कई सारी टाईल्स छन रखीं।

यख मा जी एक गाड़ करा भगण लगीं यख मा जी कई सारा बड़ा बड़ा ड़ूंगा छन रख्यां यख मा जी कुछ बिटा छन दिखेण लग्यां यख मा जी कुछ झाड़ी-झपोड़ा छन कई सारा दिखेण लग्यां।

यखमा जी कई सारा बिजली का तारन दिखेण लग्यां रेलिंगन दिखणीं पिछाड़ी फणा कुछ मकानन दिखेण लग्यां यखमा जी कई सारा हर्या-भर्या डाला बि छन।